यहाँ पास मुझे एक घर टाइप से दिख रहा है जो सबसे पीछे है उसके ऊपर सिंटेक्स भी है यहाँ गार्डन भी है और एक बड़ा-सा पेड़ दिख रहा हैं जो कि ग्रीन कलर का--

सीमेंट से बना हुआ हैं व्हाइट रंग का एक भवन दिख रहा हैं और व्हाइट कलर हैं ब्लैक कलर --